ये एक पार्क है जहाँ एक झूला लगा हुआ है झूले के ऊपर एक छोटा लड़का बैठ हुआ है तथा पीछे से साइड में दीवारों की तरफ बाउन्ड्री बनाई हुई है।

यह एक हरिहर छेत्र सोनपुर मेला दो हज़ार उन्नीस गेट के ऊपर लिखा हुआ है बहुत सारे व्यक्ति अंदर के तरफ बैठे हुए हैं।

यह एक माउंटेन है जिसपे घांस-फूस पेड़-पौधे चट्टानें हैं नीचे की तरफ एक रोड बना हैं जिसके आसपास बाउंड्री बनी हुई --